यह एक दुपहिया पार्किंग एरिया है। यहाँ बहुत सारी दुपहिया वाहन खड़ी है| पीले कलर की एक्टिवा है। नीले और ब्लैक कलर --

यह एक डायग्नोस्टिक सेंटर है उसके पा- प्रवेश द्वार पर हमें काले रंग की गेट लगी हुई दिखाई दे रही है।

दाई और एक पटरी पर नीले रंग की ट्रेन खड़ी हुई है।

एक महिला दुकान में खरीदारी कर रही है। दांयी ओर हमें किसान की एक दुकान दिख रही है।

इलेक्ट्रिक की बहुत सी वायरें है। हमें साफ दिख रही है।

ईस्टर्न कैंब्रिज स्कूल का ये दृश्य है यह एक एक मंज़िला इमारत है।

यह फैमिली मार्ट इंडिया वन है जोकि लाल रंग की दुकान है।

यह एक ऑफिस है ऑफिस के अंदर एक कर्मचारी नीले रंग का पट्टा सर पर पहने हुए कंप्यूटर पे काम कर रहा है।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस मे हमे एक टेबल और दो कंप्युटर लगे हुए दिख रहे है।